जो पंजाब नेशनल बैंक है। शायद नया खाता खोलने के लिए एक पोस्टर अ दिया हुआ है। यहाँ पर कोई बैठे हुए नहीं है सब और एक फैन है और एक हेलमेट है यहाँ पे जो भी दिख रहें है साफ सफाई अच्छी है।

मैन डोर भी खुली हुई है यहाँ पर बहुत तरह के दुकानें चल रही --

ये स्टेडियम है जोकि बहुत बड़ी दिख रही है। इस स्टेडियम मे चारो तरफ बैठने की जगह है। जहाँ पे कोई आदमी नहीं आया है इस खेल को देखने ज्यादा। बहुत काम आदमी लोग आए हैं इस क्रिकेट को देखने के लिए। लगता है जोकि स्टूडेंट लोग क्रिकेट खेल रहें हैं।

ये दृश्य है जिसमें की बहुत अच्छा एक सीन दिख रही है पानी है ताड़ की पेड़ हैं और ये सब बहुत अच्छा दिख रहा हैं जोकि एक शाम मे दिख रहे हैं।

एक मछली बेचने वाला बहुत सारे बहुत तरह के मछलियां बेच रहे हैं जो कि बहुत कोई लेने के लिए आए हैं ये सब मछलियां को खरीदने के लिए यहाँ पर सही वजन से पूरा मछली को बेचा जाता है बहुत अच्छे-अच्छे मछलियाँ बहुत तरह के मछलियां हैं यहाँ पर।

है जहाँ पर फंक्शन की जा रही है। शायद बहुत अच्छी तरह से यह हॉल को बनाया गया है। बहुत अच्छा डेकोरेट दिख रही है। यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारी सीटें हैं। अभी आदमी लोग नहीं आये हैं बट थोड़ी देर मे आ जायेंगे यहाँ पर।

यह एक सैलून है जहाँ पर बहुत तरह के हेयर कटिंग एंड मसाज एंड सभी तरह के पार्लर का यूज़ किया जाता है | इस जगह पर बहुत सारे --